एक स्कूल दिख रहे हैं जहाँ पर एक पेड़ है वहाँ बहुत स-सारे स्कूटी और गाड़ी रह --

लगाए हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं और ब्राउन कलर के पिलर्स दिख रहे हैं।

यहाँ पर एक एक पेर पेर लग रहा है और जाने-आने का रास्ता बना हुआ है और आकाश नीला कलर का दिख रहा है।

यहा पर तीन स्टम्प रखा हुआ है जिसके साइड मे बहुत सारा भगवान जी का मूर्ति रखा हुआ है।

उसके पीछे एक सोफा है ओर उसके उसके पीछे एक बहुत सुंदर स देवल मे बना हुआ है उसके साइड मे ही एक प्लास्टिक रखा हुआ है।

उसके साइड में ही बहुत सारा हारा रंग का घास है दोनों साइड मे ही--